एक नदी है ये बोहत बड़ा-सा नदी है इसमें पूजा होती है यहाँ पे बोहत सारे आदमी हैं जो साड़ी पहन के सब हाथ में सूप लेके पूजा कर रहे है और यहाँ पे चारो और बोहत बड़े-बड़े पेड़ है।